जिसके चार दिख में बहुत सारा पेड़ दिख रहा है और--

और कुछ आदमी यहां पर देख रहा है तीन गाड़ी भी यहां पर रखा हुआ है।

यह एक क्लासरूम दिख रहा है जहां पर एक ब्लैक बोर्ड है।

ये एक बजार का तस्वीर है जहां पे देखा जा रहा है ढेर सारा बाइक यहां पे रखा गया है।

और सनग्लास भी दिख रहा है इसके अंदर कोई आदमी नहीं दिख रहा--